बीच में डिवाइडर बना है | पेड़ बंधे हैं ठेले लगे हैं।

अंदर मूर्ति रखी है मूर्ति के सामने मोमबत्तियाँ जल रही हैं सीढ़ी बनी है।

बीच में छोटा मंदिर बना हुआ है मंदिर में मूर्ति है।

नीले सफेद गुबारों से सजा हुआ है। पेंटिंग रखी है।

होटल है होटल में कुर्सियां टेबल रखे हुए है।

अंदर बड़ी बोतले रखी हुई है।

मंदिर है मंदिर का गेट बंध है। अंदर लोग हैं बाहर बहुत सारे दिये जल रहे हैं।

नीले सफेद गुब्बारों से पूरी दुकान सजी है।

वेल्डिंग करने की दुकान है बहुत सारे लोहे के गेट रखे हुए है।